राशन मिल रहा है बहुत सारे बोडो में राशन रखा--

ऊपर एक फ्रिज लगा हुआ है।

कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारा कुर्सी मेज है ऊपर फैन चल रहा --

ये डॉक्टर मुंह पर मास्क लगाए हुए हाथ में ग्लव्स पहने हुए सर पर प्लास्टिक लगा --

चारों तरफ लाइट है आस पास पुराने घर भी दिखाई दे रहे हैं।

मैं देख पा रही हूं यहां एक बड़ा सोफा है सोफे के ऊपर प्लास्टिक लगी हुई है।

मैं देख पा रही हूं यहां एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में बहोत से लोग आए हुए हैं मुंह पर मास्क लगाए हुए--

सामने बहुत बाइक खड़ी नजर आ री--

कुछ खंभे है आस पास पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं चारो तरफ क्लीन है।

कुछ पत्ते लते दिखाई दे रहे हैं लाइट जल रही है।

खरबूजे और भी सारे फल रखे हुए हैं।